बेड डाला हुआ है बेड पर कंबल रखा हुआ है और दो तकिए की रखे हुए हैं।

टेबल पर ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है बगल में काऊ है।

जंगल में छोटे बड़े हरे भरे पेड़ गये हुए हैं।

और चट्टानों के ऊपर छोटे-छोटे से पेड़ अ कांटे दिखाई पड़ रहे हैं।

और बगल से बहुत ही प्यारे ये पेड़ लगे हुए हैं।

यहीं पर कुछ कपड़े डले हुए हैं बाल्टी रखी हुई है।

और वाइट पेपर से कवर कर दी गई है।

और बगल में एक रेड कलर का कुछ दिखाई दे रहा है मुझे।

के ऊपर एक छतरी लगी हुई है।

उसके नीचे श्री महाशय जी निवास कम सैनिक साइकिल लिखा हुआ है।

स्टंप लगा हुआ है एक गर्ल्स बैट लिए हुए है।

और वहां पर पुजारी पूजा कर रहे हैं।

सामने रेड चेयर पर बैठे बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

गार्डन में बहुत ही प्यारी हरियाली नजर आ रही है।

और बहुत सारी लड़कियां दिखाई पड़ रही है मुझे।

बहुत ही सुंदर सजावट नजर आ रही है मुझे।

पानी के पास तीन कछुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे शादी होते नजर आ रही है शादी में दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं।

और पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहा है ऊपर तीन तार दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ लोग मछलियां बेच रहे हैं।

चबूतरे पर एक सुरंग है जिसके चारों ओर दरवाजे का आकार है।

गार्डन के अंदर एक झूला लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इक व्हाइट कलर की मस्जिद दिखाई पड़ रही है।

यहां पर कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो ग्रीन कलर की चद्दर पकड़े हुए हैं।

तीन सोफा रखे हुए हैं और एक टेबल रखी है और एक बगल में छोटी टेबल है।

व्हाइट पट्टी है और कुछ कांच की खिड़कियां भी लगी हुई हैं।